इसकी सजावट इतनी बहेतरीन तरीखे से की गई है यानि एक अद्भुत है सा इसके पहरे के लिए दो गार्ड है।